ये एक रेस्टोरेंट है इस रेस्टोरेंट में तीन चार चेयर है जोकि ब्लू कलर की है वाइट कलर की है।

ये एक गार्डन है गार्डन के ब बीच में एक रोड है सामने से एक गाड़ी आ रही है।

प्लेन चेयर रखेंगे वाइट कलर की चेयर है बीच में एक डस्टबीन है।

बाहर है अ लड़के को सामान लेते हुए सामने हमने पिचर से--

ये एक फैमिली ढाबा रेस्टोरेंट है जो येलो कलर और रेड कलर से बना हुआ है और इसके आसपास पेड़ हैं बिजली का--

गेट के बीच बीच में दिवाली मनाई जा रही है।

अ दु पांच छह लोग बैठे हुए हैं और ऊपर लाइटिंग लगी हुई है सामने ब्लू कलर का बोर्ड है।

पीछे ये ग्राउंड सा बना हुआ है उसके पीछे ब्लू कलर का शे--

अ अ फोर व्हीलर खड़ी हैं बाहर गेट पे डेकोरेशन हुआ है।

लकड़ी का का छोटा सा घर बना हुआ है एक रेलिंग गई हुई है लोहे की फिर उसके सामने पिक्चर्स बनी हुई है सामने एक--

वैन खड़ी है एक कार है एक बाइक वाला है एक आंटी ने जो झोला लिए हुई हैं।

तिरंगा लगा हुआ है उसके ऊपर एक चादरों का शेड डला हुआ है।

एक हाथ में पंडित जी हैं जो किताब लिए हुए हैं एक पियानो बजा रहे हैं माइक है।

सर्कल बना है उसमें एक हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं फिर एक झोपड़ी टाइप की बनी हुई है।

और कुछ अह वॉलपेपर ब्लैक येलो व्हाइट में बोल वॉलपेपर है।

एक रूम बना हुआ है उसमें एक बेड है बेड के बारे में--

पर्दा डाला हुआ है ये एक तरफ येलो कलर का पेंट हुआ है।

एक स्कूटर पे एक अंकल जा रहा है वाइट कपड़ों में टोपी लगाए --

तार गए एक बिल्डिंग है जो कि ब्लू और वाइट कलर की बनी हुई है।

जाली अह लगी हुई है लकड़ी की नीचे अह मार्बल बिछा हुआ है।

ज्वैलर्स है और नीचे या अंदर--

कुछ पत्थर हीं पहाड हीं छोटासा पहाड़ है बिच में--

जो एक दीवाल है दीवाल के ऊपर चादरों का शेड डाला हुआ है।

एक स्कूल है घर बना हुआ है।

गार्डन है गमला लगा हुआ है एक गेट लगा है।

कथाई कलर का ऊपर पेड़-पौधे लगे हुए है।